एक बड़ा सा वॉटरफॉल दिखाई दे रहा है यहां पे।

और यहाँ बहुत सारी हरियाली घास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

फ्रीडम ऑन टू व्हील्स यहाँ पे ए_ सी_ है लाइट है वॉल फ्रेम्स है।

यहाँ पे काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे टेबल पर--

और यहाँ पे बहुत बड़ा सा डेस्क है शेल्फ है।

यहाँ बड़े और छोटी मछली हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मछलियां खरीद रहे हैं।

यहाँ पर एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है और बच्चियों को दे रहा है यहाँ पे--

यहाँ पे एक बोर्ड है महादेव इलेक्ट्रिक वर्क स्पेशल इन एसी डीसी मोटर्स --

यहाँ एक बड़ा सा टेंट दिखाई दे रहा है।

और ये टेंट का कलर ब्लू और यहाँ पे पर्पल रंग का है वाइट रंग का है।

बड़ा सा सोफा है ब्लू कलर के कुशन है यहाँ पे वाइट कलर का पॉट है छोटे पौधे हैं हरे हरे।

यहाँ पे ग्लास का डोर है बहुत सारे लाइट है और यहाँ पे कार दिखाई दे रही है सफेद रंग की--

यहाँ पे एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पे एक--

ये यहाँ पे दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं और वो यहाँ--

यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

अलग-अलग डिज़ाइन के चेयर्स हैं रेड एंड ब्लू ब्राउन कलर के टेबल है और यहाँ पे--

सीढ़ियां हैं और यहाँ कुछ लाइट्स है और यहाँ पे बड़ा सा डोर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे टीन के शर्ट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुर्सियां हैं।

लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ एक ग्लास का बड़ा सा डोर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे स्टोर के अंदर बहुत सारे शेल्फ है बहुत सारी चीजें हैं।

और यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है यहाँ स्टोर के बाहर एक बड़ा सा टेबल है स्नैक्स दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे चॉकलेट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ स्टोर के अंदर--

यहाँ पे डिजाइनर कारपेट है चेयर है लाइट है और यहाँ बड़ा सा टेबल है छोटे बड़े टेबल है।

और यहाँ पे अंदर बहुत सारे शेल्फ है और यहाँ स्लो शो का पॉट है।

यहाँ पे लायन का स्टैचू दिखाई दे रहा है और बड़े-बड़े--

ये एक स्टोर है स्टोर के अंदर बहुत सारे काउंटर है यहाँ पे ठेले हैं शेल्फ है।

ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसका नाम है अशोक लेला--

पूल के आसपास बहुत सारे ग्रिल के गेट हैं बड़े-बड़े झाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे बड़े हॉल है हॉल के अंदर यहाँ पे ग्रिल है ग्रिल के बहुत सारे लाइट्स है।

और यहाँ धाबे में बहुत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं।

कार है ऑटो है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं पैदल चल रहे हैं।

यहाँ ऑटो में कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे रिक्शा दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा है।

डॉक्टर राजपाल न्यूरो साईकियाट्री --

यहाँ पे बहुत बड़ा सा डोर है ग्लास का और यहाँ पे काले कलर का मैट है पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ बड़ा सा एक डोर भी दिखाई दे रहा है।

वाल पे पोस्टर है लाइट है यहाँ पे केमरा है।

यहाँ पे मशीन से बड़े-बड़े बॉक्स है यहाँ पे पाइप है बास्केट है टेबल है छोटा सा फैन है।

और यहाँ कुछ सीढ़ियां है पाइप्स है बड़े-बड़े और यहाँ पे वॉल पे कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ आसपास झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे टेबल है चेयर है ए_सी है लाइट है।

और यहाँ पे छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे अंदर बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही हैं।

एक बड़ा सा पत्थर का गुफा दिखाई दे रहा है और यह पत्थर बहुत बड़े-बड़े हैं।

यहाँ पे मिट्टी है छोटे पत्थर है यहाँ पे घास है।

यहाँ पे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं सफेद रंग का घर है।

यहाँ एक छोटी सी सड़क है यहाँ पे सड़क के पास एक गाड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पे--

बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं बिजली के खंबे दिखाई दे रहे हैं।

ये बड़ी सी मंदिर दिखाई दे रही है और यहाँ पे मंदिर में बहुत सारे छोटे-छोटे मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

ये बड़ा सा मैदान है मैदान में बहुत सारे बच्चे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं।

यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है और ये एक शोरूम है हेटिंग शोरूम है यहाँ पे बहुत सारे--

आ चीजें दिखाई दे रही है शोरूम के बाहर बहुत सारे गाड़ियां हैं बोर्ड है यहाँ पे बिजली के खंबे हैं वायर है।

कंपाउंड है बहुत सारे पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।